बोर्ड दिखाई दे रहा है चेयर्स दिखाई दे रही है टेबल दिखाई दे रही है दीवार दिखाई दे रही है दीवार का कलर हरा दिखाई दे रहा हैं परदे दिखाई दे रहे हैं।